ये पुतलोंके भी-भी-बृहे के पुथलोंके बीच मे चक्रा भी दिख रहा है पीछे की और ढेर सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।

दुकान के बाहर सजाने की चिसे भी मौजूद है कुछ लेस के पॅकेट दिख रही है दुकान की दूसरी और एक व्यक्ति बनिया पेनहा ठेहरा है दूसरी और एक बंगला नजर आ रहा है।

इस चित्र मे एक दुकान नजर आ रही है दुकान का नाम वैरायटी स्पोर्ट्स यहा पर स्पोर्ट्स के सारे समान मौजूद दिख रहे है।

इस चित्र मे कुछ लड़के नजर आ रहे है जो की क्रिकेट खेलने की की प्रैक्टिस कर रहे है लड़को ने ब हात मे ब्याट लिया हुआ है और लड़को के पास विकेट भी मौजूद है।

इस चित्र मे एक छोटा सा शॉप नजर आ रहा है ये शॉप का नाम बोन्साली लाइफ स्टाइल स्टोर फॉर किड्स बता रहा है।

इस चित्र मे एक शौचालय नजर आ रहा है शौचालय के दीवारों कों सफ़ेद रंग से रंगाया गया है और दीवार पर दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है।

शोचलाए के ऊपर एक पानी के लिए सफ़ेद टंकी मौजूद है शोचलाय के पीछे की और जंगल हारा भरे पेड़ पौधे बड़े बड़े नजर आ रहे है।

इस चित्र मे एक आइसक्रीम शॉप नजर आ रही है ये दुकान के ऊपर सफ़ेद पोस्टर पर स्कूप अँड शेक लिखा हुआ है नीचे तरह तरह के आइसकीम्स दिख रही है ये बहुत स्वादिस्ट दिख रही है।